केला तरबूज अनानास और आलू टमाटर आदि चीजे नजर आ रहे--

खम्भा नजर आ रहा है और एक कंडक्टर नजर आ रहा है और यहाँ पे सड़क नजर आ रहा है यहाँ बहुत गंदा सीन लग रहा है यहाँ पे अच्छा कुछ भी नहीं है।

ये बहुत सुंदर लग रहे है और नीचे में अच्छा सा टाइल्स है अच्छा लग रहा है ।